एक छोटी- सी दुकान है अंदर कुर्सी है टेबिल है कुरकुरों के पैकिट टंगे हुए है रेक है वहाँ साबुन- आबून रगी हुई है बाहर टमाटर टोकरियों मे है पत्ता गोबी हैं।

रेक है ढेर सारे कपड़े जमे हुए है चार पांच जोड़ी कपड़े टंगे हुए है लाइट जल रही हे जानी की रास्ता है।